मूर्तियों के आगे एक पंख लगा हुआ है।

एक आदमी कुर्सी पे बैठा हुआ है।

पीछे घर बने हुए हैं बड़ी-बड़ी बिल्डिंग आस-पास पेड़ हैं खाली मैदान --

एक खंभा लगा हुआ है खम्बे से डोरियां बाँधी हुई हैं।

एक साइकिल को पड़के दोनों लोग खड़े हुए हैं।

टेबल के आस-पास बहुत सारी कुर्सीयां रखी हुई हैं।

कटोरी में एक चटनी रखी हुई है।

मंदिरों के आस-पास खजूर के पेड़ लगे हुए हैं सामने एक पुल है।

यहां पे मम फुल लगे हुए हैं एक डीगी रखी हुई है।

गेट के पीछे एक दीवार है।

बजार में दुकाने लगी हुई हैं।

यहां पे एक बड़ा-सा तालाब है।

माद मैदान में हरी घास निकल रही है।

एक सामने बड़ा-सा मकान है।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

यह एक बड़ा-सा तालाब है तालाब में कुछ नाव हैं।

यहां पर कुछ प्लेट रखे हुए हैं।

दुकान के अंदर दो झूमर मम लटके हुए हैं।

मंदिर में एक बड़ा-सा गेट लगा हुआ है मंदिर के अंदर एक पीला कपड़ा रखा हुआ है।

डॉक्टर के पास कुछ हथियार हैं।

केले के उपर छोटे-छोटे पौधे उग रहे हैं।

यहां पे बहोत सारी औरतें हैं।

पुतले ने एक फ्रॉक पहने हुई है।

जीने के ऊपर रेलिंग लगी हुई है।

लोग कुर्सियों पे बैठे हुए हैं।

यहां छोटे-छोटे पौधे लगे हुए हैं एक बड़ा-सा पेड़ लगा हुआ है।

उसके पीछे दो तस्वीर रखी हुई हैं।

आस-पास तार लगे हुए हैं।

बाइक हैं स्कूटी हैं साइकिल हैं।

एक प्लेट है प्लेट काले कलर कि है प्लेट में चावल रखे हुए हैं।